इहां एक व्यक्ति को यहां पे बहुत सारी बुक रखी हुई है एक आदमी कुर्सी पर बैठकर फोन चला रहा है।

कॉम्पटीशन सभी प्रकार के बुक मिलती हैं।

यहाँ पे जालियां भी है सामने घर बना हुआ है।

उसके ऊपर टिन लगी हुई है उसके ऊपर सफेद कलर का पेंट किया गया है यहां पे बहुत सारे घर बने हुए हैं यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पर्दे लगाए हुए हैं पीछे एक घर बना हुआ जिसपे नीले कलर का और वाइट कलर का पेंट किया गया है।

यहां पर यहां पे बहुत सारे पेंटेड किए जाते हैं यहां पे झंडा लगा हुआ है।

ऊपर टिन लगी हुई है यहां पे एक बाइक खड़ी हुई और यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ हैं।

यहा पे एक बस खड़ी हुई है जो कि सफेद कलर की उपर बहोत सारे लोग बैठे हुए है।

यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे बहुत सारी गाड़ी बाइक आ जा रही है पीछे एक खंभा लगा हुआ है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे इंपैक्टो बनने के लिए दो दो मशीन है यहां पे एक आदमी बैठ के फोन चला रहा --

यहां पे अलमारी बनी है उसमें बोल--

कपड़े किताबें रखे हुए हैं यहां पे एक --

यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है पंखा भी लगा हुआ है।

यहां पे काली कलर की पन्नी रखी हुई है यहां पे बहोत सारे डब्बे भी रखे हुए हैं।

यह एक शॉप की तस्वीर जिसका नाम पा भगवान परशुराम फ्रो--

यहां पे एक गाड़ी खड़ी है सफेद कलर के उसमें दो आदमी जा रहे हैं।

शीशे लगाए हुए है वहां पे चांद को--

यहां पे बहोत सारे बैट रखें--

ये एक बहुत बड़ा पार्क है उसमें एक हरी हरी घासें उगी रही बिच में--

यहाँ पे की खड़ी हुई है यहाँ पे दो लड़के उसे चेक कर रहे हैं सामने एक--